इन सामानों को प्लास्टिक से ढक के रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

उसी घर के आगे तिरंगे को लगाए हुए हैं।

और दूसरे दुकान में एक लड़की का पोस्टर लगाया हुआ है।

जहां सब दुकान बंद हो चुका है।

और एक मैदान में बहुत सारी गाड़ी पार्क किए हुए दिखाई दे रहे हैं।

वो सब चेयर पर बैठे हुए हैं।

उस दुकान का ओनर दिखाई दे रहा है जो की एक औरत है।

इसके सामने एक सफेद कलर का घर भी है।

वो गेट के आगे बाइक पार्क किए हुए हैं।

इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रही है।

उस सोफे के ऊपर तरफ़ के दीवार पर बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए है।

और वहाँ एक टेबल और दो चेयर रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में तीन इंसान दिखाई दे रहे है।

एक तरफ पे बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए हैं।

उसी ब्रिज के सामने एक बहुत बड़ा नदी भी दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए तीन चेयर भी रखे हुए है।

उसी घर के अंदर एक गाड़ी को पार्क किए हुए है।

इन सब टायरों का रंग काला है।